जिसके आस-पास पानी के फब्बारे चलते दिखाई दे रहे है।

एवं लाइट के कारण कुछ ब्लू लाइट एवं कुछ येलो लाइट भी दिखाई दे रही हैं ।

गोल- गोल पेनल रखे दिखाई दे रहे है एवं आसपास --

यह पैनल एक के ऊपर एक सजे हुए रखे हुए हैं।

एवं शंकर जी का त्रिसूल भी दिख--

यहाँ पर मुझे बी.एड.विभाग लिखा हुआ दिख रहा हैं।

सभी ने लोअर एवं टी-शर्ट भी पहने हुए है एवं--

कुछ पत्थर भी दिख रही है एवं कुछ पेड़ भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ कागज है एवं एक मैडम --

कुछ पत्तिया भी निचे पड़ी-पड़ी सड़ती हुई दिखाई दे रही है।